इस तस्वीर मे बोहोत सारा रिक्शा हरे है और पीले रंग का | अ बादल है पेड़ है ।

एक वहा पे जनरेंटर रखा हुवा है और अ उभ अच्छा लग रहा हेैं| ये --

अ इसकी दीवारें नीले कलर की है| वहा पे एक घड़ी लगा हुआ है| और अ नीचे का फ्लोर हरे रंग का है और लाइटे जल रही है।

ये कोई उत्सव घर लग रहा है जहा पे बोहोत सारा सजावट किया गया है ।

केला हेै अंगूर हेै सेब हेै नारंगी हें अ अनार हेै और ये कागज के कतरे पे रखा हुवा है| हरे रंग का भी कुछ है पीले कलर का |

क्रिकेट का मैदान हेै जहा पे लड़किया क्रिकेट खेल रही है और वहां पे एक नेट भी लगा हुवा है| विकेटकीपींग हो रहा है| उसके पैर मे नीले रंग का कुछ पेहना हुआ है जूता पेहेना हुआ हेैं।

साउथ इंडियन डोसा है जिसको केले के पत्ते पर सर्व किया गया है और एक चटनी है| दो ग्लास है टेबल है खुरसी है और देखने मे बोहोत अच्छा लग रहा है ये ।

इसके पीछे एक लाइट लगा हुआ है और उसके बाद आकाश दिख रहा है| एक औरत गोदी मे बच्चे को लेकर खड़ी है| और वो आदमी ब्लू कलर का जीन्स पहना हुआ है।